चौखट गाड़ी लगा रहा है। देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है एक स्टूल है एक स्टूल पर एक आदमी --

बहुत सुंदर दिख रहा है | पेड़ पौधे दिख रहे हैं | आसमान भी दिख रहे हैं फूल लगा हुआ है |

इसमें टावर दिख रहा है।

सोलिंग है ये कुआँ जैसा दिख रहा है उसमे से पानी दिख रहा है।

इसमें बड़ा-बड़ा पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ।